हाथ पर मोबाइल लेकर बैठा है वो मोबाइल चला रहा है और उसके --

सामने एक मूर्ति दिखाई दे रही है।

उसके नजदीक तीन व्यक्ति और बैठे हुए हैं।

ये देख सकते हैं इस तस्वीर में हमें एक पानी का झरना दिखाई दे रहा है।

इसमें कुछ बड़े बड़े चट्टान वे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

चार लॉकर हैं जिसमें अलग अलग तरह के गहने व--

जो कि मीटिंग करने वाली जगह हैं।

इस तस्वीर में हमको एक गव सारा दिखाई दे रही है।

टोल टैक्स दिखाई दे रहा है जिसमें हमारे बड़े वाहनों का--

ये देखिए इस तस्वीर में एक--

हेयर सलून का उद्घाटन किया जा रहा है और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हुए हैं।

इसमें कई रंग किए गए हैं और इसमें कई देशों का नाम का बोर्ड लगा हुआ--

ये एक बहोत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

कछुगमा दिखाई दे रहा है जो कांच पर लेटा हुआ है और ये बहोत अच्छा दृश्य है अ ये बहोत अच्छी तस्वीर दिखाती है हमें --

बहोत तगड़ा बिजनेस किया जा रहा है इसमें बजरी व कंकड़ को मिलने हीलाने का काम किया जाता है ये एक अच्छी तस्वीर है।